यह लड़का है और यह लड़का एक --

यहां पे दो जिराफ हैं दो जिराफ अपने पिंजरे में बंद हैं और एक जो --

और अकेले जाते हैं और यहां पे को बहुत ही --